उसने नीले रंग का जींस और काले रंग का अ वेस्ट पहना है।

इस तस्वीर में एक बड़ासा स्विमिंग पूल दिखाया गया है जहां पर कुछ बच्चे मां बाप खेल रहे हैं।

इस तस्वीर में बाहर का सीनारी दिखाया है जहां पर एक आदमी साफ सफाई कर रहें हैं।

इसके सामने एक बड़ा सा बैंक भी है।

और एक आदमी कुछ सब्जियां बेच रहे इसने लाल रंग के कपड़े पहने हैं और स्कार्फ भी लगाया हुआ हैं।

उसके सामने कुछ और भी लड़की दिखाए गए हैं।

एक दूसरे के ऊपर चढ़कर अपनी टैलेंट दिखा रहे हैं।

बहोत सारे पास्टर्स और कुछ लोग बैठकर फोटो क्लिक कर रहे हैं।

बोट पर बैठकर कहीं जा रहे हैं और एक लड़की भी है।

ब्लू कलर का शर्ट दिख रहा है ऐसा लग रहा है कि वो किसी सैलून दुकान के अंदर है।

और इसके आगे दो लड़के पोस दे रहे हैं।

यहां पर लड़के का कपड़े दिख रहा है।

जो एक बाड़ी का जैसा कुछ फोटो दिखाया है।

इस तस्वीर में एक मछली का दुकान दिखाया गया है जो बहोत सारे मरे हुए मछली को रखा गया है।

इस तस्वीर में एक रेस्टोन का काउंटर जैसा दिखाया गया है।

इसके ऊपर एक अच्छा सनलाइट भी लगाया गये है।

इस तस्वीर में एक कलरफुल रेस्टोरेंट या कैफे लग रहा है।

टेबल्स पर डिशेश और ग्लासेस दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक हिस्टोरिकल जगह दिखाए गए हैं।

जहां पर लोग घूमने आए हैं।

एक आदमी ने सफेद रंग का शर्ट पहन के खड़ा हुआ है और दूसरे आदमी का थोड़ा सा शकल दिख रहा है।

और यहां पर रात का वक्त लगता है।

तस्वीर के बीचों बीच एक लड़का खड़ा हुआ है।

उसने लाल और काले रंग की चेक वाली लंबी बाय जो शर्ट और गहरी नीले रंग की जींस पहनी हुई है।

ये बिस्तर में कुछ मैट्रेस भी लगाया गया है।

बहुत सारी लाइट्स लगाए गए हैं और एक सफेद चेयर भी है।

इसीने पहना हुआ है और ये किसी जिम के अंदर के सिनेरी लगता है।

ताड़ के ठीक पीछे दीवार पर एक बड़ा क्रॉस लगा हुआ है।

अलतार के पास एक प्रीस्ट खड़े हुए हैं जो सफेद और लाल रंग के वस्त्र पहने हुए है।

जिसके आगे बहोत सारे आदमी खड़े हुए हैं।

इस तस्वीर में एक बड़ा सा पत्थर का गुफा दिखाये गए है।

जो किसी चर्च या शादी की माहौल के बाहर खड़े हुए है।

और उसने काला और लाल रंग का कपड़ा पहना है।

शकल ब्लर की गई है और उसके पीछे रंग बिरंगी के किताबे रखे हुए है।

लाल रंग का बड़ा बड़ा सा बोर्ड लगाया हुआ है।

इनमें से एक ही ने पीले शर्ट पहनी है।

जो किसी बिल्डिंग का काम कर रहा है।